साइड में एक स्टूल पर कुछ बॉटल्स --

अंदर की तरफ कुछ प्लांट्स भी लगे हुए हैं।

बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

सामने की दीवार पर टाइल्स लगे हुए हैं।

अंदर की तरफ कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

ऊपर की तरफ एक लोहे का शे--

बेंच पर बैठे हुए हैं।

एक बड़ा सा गेट दिख रहा है।

साइड मे एक टेबल और कुर्सी पर एक आदमी बैठे हुए है।

पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक सब्जी मार्केट है।

बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यह एक गुरुद्वारा है।

दो नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं।

पिलर भी दिख रहे हैं।

पीछे की तरफ कुछ कार दिख रही हैं।

सामने की तरफ एक काली गाड़ी दिख रही है।

जिसकी पीले कलर की नंबर प्लेट है।

यह एक छोटा सा टेरेस गार्डन है।

एक लाइट का खंभा और बहोत सारे तार दिख रहे है।

सामने की तरफ कुछ लड़के और लड़कियां खड़े हुए हैं।

ऊपर की तरफ कुछ लाइट्स और पंखे दिख रहे हैं।

एक दुर्गा देवी मंदिर दिख रहा है।

सामने की तरफ तीन लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं।

आस-पास बहोत सारे पेड़ और फूल --

जिन पर लकड़ी की नक्काशी की हुई है।

बहुत सारी बुक्स शेल्फ पर रखी हुई हैं।

एक काँच की टेबल और बहुत सारी कुर्सियां दिख रही हैं।

एक लोहे का खंबा दिख रहा है।

एक बाइक खड़ी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट का हॉल है।

सामने एक सड़क दिख रही है।

बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

थोड़ी दूर पर कुछ गाड़ियां पेट्रोल डलवा रही हैं।

पीछे की तरफ बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं।